घाम आ रहा है आप देख सकते हो पीछे की तरफ।

जिम करने की मशीन रखी हुई है जिनसे ये बॉडी बनाते है और एक से बड़े हैं।

और यहां कुछ खाने के लिए सामान लगा रखा है एक आदमी वहां खड़ा है और यहां टेबल पे लाल कलर के कपड़े लगा रखे हैं।

और यहां पे एक बडा सा हॉल दिख रहा है और दो यहां पे खिड़की है और पली साईड है घर पैर सफ़ेद कलर का कल लगरा है।

नदी में पानी बहुत कम है और इस साईड कुछ घास ऊगा रखी है और यहां पे पत्थर भी हैं परली साईड कुछ लोग हैं और एक स्कूटी खड़ी है।